नीचे की तरफ सफेद चादर बिछी है।

ऊपर की तरफ कुछ लाइट्स दिख रही हैं।

एक सफेद बिल्डिंग बनी हुई है।

एक येलो का रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक बड़ा सा लोहे का खंबा और एक ऊपर से शेड भी लगा हुआ है।

ये शोरूम है।

अंदर की तरफ बहुत सारे बाइक और कुछ आदमी दिख रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे बस भी खड़े हुए हैं।

एक नीले कलर का शेड भी डाला हुआ है।

इसमें सामने की तरफ एक काले कलर की सिंटेक्स रखी हुई है।

ये एक क्रासरि का मॉल है।

एक लड़की और एक औरत यहाँ पर है।

जिसमें कांच के खिड़कियां हैं।

एक कॉफी का डिस्पोज़ल है।

एक तरफ टमाटर और गाजर दिख रहे हैं।

ये एक शुभम नर्सरी है।

बहुत सी लाइटें और पर्दों से ये सजा हुआ है।

जिस पर ए_टू_ज़ेड लिखा हुआ है।

ये एक किराने की दुकान है।

ऊपर की तरफ बहुत सारे लाइट्स लगी हुई हैं।

दो औरते और तीन आदमी फोटो खींच रहे हैं।

सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं।

अंतर की तरफ कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं।

खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं।

ये पार्टी हॉल का बोर्ड लगा हुआ है।

एक बैट लगा हुआ है।